कुरकुरे हैं चिप्स हैं और यहाँ पे मैगी मसाला भी दिखाई दे रहा--

फूल लाइटिंग चालू है यहां पे जो बड़े बड़े ट्यूबलाइट हैं और यहां पे स्टैंड में भी बहुत सारे चीजें रखे गए--

जैसा कि अचार है बर्नियां है जो यहाँ पे चिंकस मसाला है एक मैगी मसाला--

और यहां पे स्टैंड में सारे यहां पे कपड़े रखे गए हैं और यहां पे दो तीन लेडीज है जो देख रहे हैं।

और यहां पे जाने के लिए भी रास्ता है और यहां पर बहुत सारे पेड़ भी हैं जो ऊंचे हैं भरे हरे भरे हैं ग्रीन कलर के हैं।

और यहां पे है स्विच बोर्ड जो यहां पे चालू है और यहां पे भी पेमेंट कराना है फिर वो सब खाना है।

और बड़ा आईना है लाइटिंग है ट्यूबलाइट है लाइटिंग बहोत सारी लाइटिंग लगाई हुई है और यहां पे भी है जो--

यहां पे एक दुकान है जिसका नाम अमूल मिल्क लिखा गया है अमूल दूध पीता है इंडिया .

ए_सी है एक दीवाल है दीवाल का कलर यहां पे येलो और वाइट कलर में रेड --

और यहां पे डी_जे हैं यहां पे वाई काले कलर के दीवाल का कलर व्हाइट है और यहां पे है।

और यहां पे पेड़ हैं जो ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे हैं आसमान नीला नजर आ रहा है।

दिखा गया है जो पान अवेलेबल है यहां पे फायर पान भी मिलता है यहां पे अंदर जा के लिक ले सकते हैं।